इसके सामने रिसेप्शन पर दो चेयर्स --

एक सामने ट्री भी दिखाई--

ए गोट पार्क में बैठी है।

इस पार्क में काफी झूले लगे हुए हैं यहां कुछ--

पीछे कुछ वृक्ष भी हैं ये वृक्ष--

इन मालाओं का कलर येलो है।

साथ एक लाइफबॉय का हैंड सेनीटाइजर पड़ा है।

ये बोटें काफी बड़े हैं।

इस पैलेस के स्टेज पर सोफा भी पड़ा है।

इसके बाहर काफी विकस खड़े हैं।

सामने एक वाटर बॉक्स भी बना हुआ हैं।

इसने लड़के ने कोट पॅन्ट गले में --

पीछे काफी बैलून्स लगे हुए हैं।